ए यहां कुछ लोग दिख रहे हैं।

मुझे यहां कुछ साड़िया दिख रही है।

मोर दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ी नदी दिख रही है।

मुझे यहां एक कार दिख रही है।

एक बेड दिख रहा है।

बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है।

मुझे यहां एक बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

मुझे यहां इंडिया कोटिंग पाउडर लिखा दिख रहा --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक काय दिखाई दे रही है।

कोई दिखाई दे रही है।

एक लोहे का गेट लगा दिख रहा--

ये यहां कुछ पेड़ दिख रही है।

बाइक दिखाई दे रही है।

मुझे यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।